यह कोई गैराज है इसमें काफी सारी गाड़िया रखी हुई है और कुछ कुर्सियाँ रखी हुई है।

सामने एक मकान नजर आ रहा है उस मकान में कोई गड्ढे वगैरा बन रहा है और--

सामने एक कॉपी वगेरा की दुकान नज़र आ रही है उसपे पोस्टर्स से चिपके हुए हैं छोटे-छोटे और --

गेट सा बंद है और बड़ा सा पोस्टर चिपका हुआ है एक लाइट जल रही है और कुछ अँधेरा-अँधेरा नजर आ रहा है।

ने एक गेराज है उसमे कुछ बांस के खंबे लगे हुए हैं और एक चार पहिया की गाड़ी खड़ी हुई हैं।

एक औरत चढ़ने जा रही है और कुछ आदमी भी सामने खड़े हुए हैं कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।